और उन्हें पन्नी से बंद किया गया है।

सैलून के अंदर एक कुर्सी है जिसपे एक आदमी बैठा हुआ है और सैलून वाला उसके बाल काट रहा है।

एक खेत दिखाई दे रहा है उसके पास एक घर है।